इन मे कुछ लोग हाथों में किताबे छोटी-छोटी पकड़े हुए हैं और सर पर टोपा लगाया हुआ है व्हाइट कलर के कपड़े पहने हुए कुछ लोग वैसे ही खड़े हुए हैं।

इसमें एक आदमी पतवार नदी में डाले हुए है।

सामने एक पुल बना हुआ है जो सिलेटी कलर का है कुछ लोग नदी में पूजा कर रहे हैं और नदी का रंग चौक चॉकलेटी कलर का है।

ने एक आदमी खड़ा हुआ है उसकी बगल में एक बच्चा है डैम के गेट लगे हुए हैं ऊपर पुल के कुछ जानवर और कुछ आदमी चल रहे हैं।

सामने कुछ लोग बैठे हुए हैं कुछ लोग ढोलक बजा रहे हैं तो कुछ लोग गिटार सा बजा रहे हैं पीछे एक स्टेज लगी हुई है जो है नीले कलर का पर्दा टंगा हुआ है।